चार लोग बाहर है बस के फिर एक बूढ़े बस में चने की कोशिश कर रहे हैं।

एक जे_सी_बी भी नजर आ रहा है और कुछ पानीया भी दिख रहे हैं और एक ब्रिज भी नजर आ रहा है।

देर सारे छोटे छोटे पट्टर नजर आ रहे हैं और सूरज ढल रहा है।

सफेद वाल के भीतर एक घर दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे कुछ लोग दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे कुला रास्ता दिख रहा है उसमें कुछ आटो तथा मोबाइल और स्कूटी चलते हुए दिख रहा है।

इस चित्र मुझे एक घर नजर आ रहा है और एक सफेद रंग का गौतम बुद्ध का मूर्ति नजर आ रहा है।

गौतम बुद्ध की मूर्ति के पीछे ही एक पेड़ लगा हुआ है।

अंदर सटीक पे ही एक टैंक बना हुआ है और गेट के पास ही एक बड़ा सा पेड़ परा हुआ है और उसके अंदर स्कूल की बिल्डिंग है।

इस चित्र में मुझे तीन दुकान नजर आ रहा है उनमें से दो दुकान खुले हुए हैं और एक बीच के भीतर बन्द --

इस चित्र में मुझे एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है जिसके अंदर रिसेप्शनडिस दिख रहा है और उसके चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है जिसमें ए_सी का प्लग लगा हुआ है।

टेबल दिख रहा है जिसमें चेयर लगे हुए हैं।

और दरवाजा ब्राऊन रंग का है।

फिर एक काला रंग का स्पीकर भी दिख रहा है और--

कुछ कपरे दिख रहे हैंगर में टंगे हुए फिर कुछ टॉवेल दिख रहे है।

चित्र में मुझे खुला रास्ता नजर आ रहा है सफेद रंग वॉल भी दिख रहा है और कुछ घर नजर आ रहा जिनमें कुछ गड्डियां स्कूटी बाइक पार्क करे हुए हैं और कुछ लोग खड़े और टहलने वाले दिख रहा है।

चित्र मुझे कुछ लोग दिख रहा है।